एक रेड कलर की स्कूटी खड़ी हुई दिख रही है। कुर्सियां लगी हुई हैं।

अं पेड़ लगे हुए हैं। कुछ झाड़ियाँ लगी हैं। झाड़ियों के बीच में अं तख्तियाँ लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

अं किनारे पर पौधे को लगे हुए हैं। बॉउंड्री वॉल बनी हुई हैं। अं पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं।

आ अलग रंग के धागो का प्रयोग किया हुआ है।

दो लड़के दिखाई दे रहे हैं। एक सीढ़ी रखी हुई है। दुकान पर कुछ लिखा हुआ है। पेड़ लगे दिख रहे है।

अं एक मूर्ति रखी हुई है।

पहाड़ पर पेड़ लगे हैं। पेड़ की पत्तियां हरे रंग की हैं। आसमान में बादल दिख रहे हैं।

हाथो में मोबाइल लिए हुए हैं। टेबल पर पर्स चश्मा और कैंची रखी हैं। स्प्रे बॉटल रखी हैं।